यहां पर ऊपर कुछ वड़ा पाव रखा गया है और खाने का जो बोर्ड है उसमें बहोत सारे खाने का तस्वीर है।

और उस साइड पर दो लाइन की खूँटी भी है और पेड़ के चारों ओर बहुत सारा गार्डन जैसा कुछ है।

यह एक इवेंट का फोटो है जहां पर दिख रहा है कि व्हाइट चेयर पड़ा हुआ है और तीन टेबल भी पड़ा हुआ है।

और गेरुआ वस्त्र पहन के लो जो लोग बेठे है उनके सामने कुछ आदमी खड़ा हुआ है।